कुछ अनार है कुछ चीकू है कुछ आडू है कुछ पेडू है कुछ स्टोबेरी है यहाँ पर फलों से सबंधित सभी प्रकार के फल दिखाई दे रहे है।

साइड में एक बैग रखा हुआ है जो इस कमरे की शोभा को बड़ा रहा है कमरे की बेड की साइड में लाइटिंग की फुल व्यवस्था कर गई है।

यह एक स्कूल की प्रतिमा दिखाई दे रही है इसके बहार बहुत बड़े बड़े पेड़ पोधे है तथा इसके बहार एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

पर्वतों के बीच में स्तिथ है एक गुफ़ा के रूप में दिखाई दे रहा है एक सामूहिक चित्रण है यह पहाड़ो के बिच में स्तिथ की हुई एक गुफा है जो बहुत पुराने समय --